ओ गाड़ी के सामने जो है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे

यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा मंदिर है मंदिर मे इतना बढ़िया लग रहा है |

पता नही चल रहा है क्या लिखा हुआ है लेकिन बहुत बढ़िया लग रह रहा है बहुत भयंकरलग रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है आपको के लिए बहुत मन --

एग्जाम स्टार्ट है ।

वो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं ।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा हैं ।

यहाँ देखिए इतना अच्छा लग रहा है देखने में ये नजारा कितना सुन्दर है कतना खूबसुरत हैआपलोग भी देख के हैरान हो जाइएगा इतना मस्त है | हैरान --

कितना सुन्दर है इतना अच्छा है बहुत बढ़िया है देखने लायक है कितना सुन्दर लग रहा है।

ये मंदिर इतना सुन्दर है की देख सकते है आपलोग भी कितना अच्छा मंदिर है कितना अच्छा क्वालिटी है ।

यहाँ देखिये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है | इतना सुन्दर लग रहा है | बहुत बड़ा भयानक लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है |

और इधर भी देखिये बहुत सारे आदमी है गुलाब का फूल जैसा डिज़ाइन है यहाँ पर है बहुत सारा सुन्दर लग रहा है नजारा देखने मे --